और काला आसमान दिखाई दे रहा है काले घने बादल भी दिख रहे है। इन बिल्डिंगो के काच की खिड़कियाँ लगी हुई है। ये बिल्डिंग सफेद सफेद मुझे--

यहा रखी हुई है हमे रोड दिख रहा है और लोग आनाजाना कर रहे है लोग खरीद रहे है।

एक सुपर मार्केट के सामनेकी फोटो है यह सुपर मार्केट का नाम शाम सुरप मार्केट यहां पे रखा हुआ है और एक बड़े बैनर की बड़ा बैनर लगा हुआ है काले कलर का जिसमे लिखा हुआ है शाम सुपर मार्केट --

यहा पे एक बसस्टेशन है। जहा पे मुझे कुछ दो तीन बसे यहा पे दिख रही है। और ए रोड के हाइवे के उपर मुझे दिखाई दे रही है। कुछ लोग यहा पे बसो मे चड़ रहे --

अन आसमान जा दिखाई दे रहा है पीछे से पेड़ भी दिखाई दे रहे है लड़को ने सफ़ेद कलर के कपड़े जहा पहने हुए है और कुछ यहाँ बैनर लगे हुए है जे दिख रहा है।